इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे आभूषण दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बर्तन दिखाई दे रहे है।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

यहां मुझे तीन पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे स्टेशनरी का सामान दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे कुछ दवाइयां दिखाई दे रही है।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

मैं मुझे कुछ मैदान दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है।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

तस्वीर मे मुझे कुछ अलमारियां दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं।